इस तस्वीर में एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे लोग नहा रहे है उसी के पास में व्हाइट कलर ये घर बना हुआ आसपास --

बड़ी सी बिंदी लगी हुई दोनों ने व्हाइट कलर के कपड़े पहने है और ऊपर उनके ऊपर जो है न उन्होंने शेरवानी पहनी हुई है।

और वह हाथ बांध कर खड़े हुए न और उनके पास मे एक चश्मा रखा हुआ है।

जो है कांच लगे हुए हैं उसके ऊपर जो लाइटिंग पड़ रही है वो बहोत सुन्दर दिखाई दे रही है उसी के पास तीन चार चेयर और रखी हई है। ये ऑफिस जैसा पूरा दिखाई दे रहा है।

तो लगी हुई है इसके बीचों बीच से जो गई है। उसके पास में एक बड़ा सा झाड दिखाई दे रहा उसी के पास में घर दिखाई दे रहा --

इसमें अगल दूल थोला देखे तो इसमे जैसा दिखाई दे रहा है जिससे सुबह-सुबह का टाइम औ उसके पास में बड़े-बड़े तीन-चार झाड दिखाई दे रहे हैं लाइन से।

और इन्होंने जो है पिंक कलर की जो ओढ़नी ओढ़ रखी है। इनके जो गले मे --

एक वाइट कलर और ग्रीन कलर और येलो कलर क्रीम कलर का जो है हार पहनाया हुआ है और इनकी जो मूर्ति है व्हाइट की बहोत ही सुंदर दिखाई दे रही है।

इसी के पास में रेड कलर की लाइटिंग जो है बहोत सुन्दर दिखाई दे रही है। उसके पास में अगर आप देखे तो बहोत सारी मुर्तियां बनी है जो हाथी की मुर्तियां बानी हुयी है वो उनके ऊपर है।

वो रखा हुआ है जो की अ व्हाइट और सिल्वर कलर का दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे तो इसमें जो लाइटिंग है वो बहोत सुंदर --

की दिखाई दे रही है और इसमें कुछ जगह पर धूप दिखाई दे रही है कुछ जगह पर छाव दिखाई दे रही है।

वो सभी व्हाइट कलर के दिखाई दे रही है और मैं ब्लैक कलर की कुछ जो रचनायें बनी हुई है उनके ऊपर अगर आप देखे --

ब्लू कलर के जो जाले से गेट बना हुआ है उसके नीचे अगर आप देखें तो व्हाइट कलर का जो घर बना हुआ है और उसके ऊपर जो --

एक लोग जा रहे है| जिन्होंने व्हाइट कलर की जो है टी-शर्ट पहनी हुई है। अगर उन्ही के पास देखें तो एक बॉर्डर बनी हुई है।

जिसे बौंड़री बोल सकते हैं वो व्हाइट कलर की बनी हुई है और उसके पास मे एक बड़ा सा झाड है जिसमे रेड कलर के फूलस लगे हुए हैं।

आ ऑरेंज कलर की साड़ी पहने हुए है। उसके पास में एक जो लड़की खड़ी है उसने व्हाइट कलर की टॉप पहनी है और नीचे जींस पहना हुआ है जो की ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। उसके पास में अगर देखे जो दीवाल है।

कारीगरी के हिसाब से लगी हुई है। इसमें जो लाइटिंग है वो ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है।

जो की पिंक और व्हाइट कलर के जो बलूनस दिखाई दे रहे है। ऊपर जो पोस्टर लगे हुए है। उनमे जो बहुत सारे--

तो इसमें जो जालियां दिखाई दे रही है वो ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है और इसमें ऊपर जो है पोस्टर में अ अ हिंदी में कुछ लिखा हुआ --

और इसमें जो लाइटिंग लगी है। वो दो लाइट लगी --

दिखाई दे रही है। इसमें बहुत सारी गाड़ियां जो है खड़ी है।